styling a page using themes पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगेthemes का परिचय themes का पता करना और बेसिक theme इंस्टॉल करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं
जैसे कि पहले ही उल्लेख किया है drupal website को हम अपने अनुसार कैसे भी बना सकते हैं
वास्तव में यहाँ कई drupal sites के कुछ भिन्न looks और feels हैं
ध्यान दें कि वे पूरी तरह से अलग हैं
यह theme पर आधारित है
themes आपकी drupal site को आपके अनुसार बना सकते हैं जैसे आप चाहते हैं
यहाँ themes के बारे में याद रखने योग्य कुछ चीजें है
हम themes को कुछ अलग स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं हमारे पास drupal org में फ्री themes हैं जिन्हें contributed themes कहते हैं या हम theme को किसी भी विक्रेता से खरीद सकते हैं
या हम अपना theme भी बना सकते हैं जैसे कि artisteer com से artisteer अर्थात इसे scratch से बनाएँ
contributed themes को drupal org/project/themes पर पाया जा सकता है
block regions theme द्वारा निर्धारित हैं
अत: जहाँ हम अपनी website पर blocks रख सकते हैं यह theming process का भाग है
यदि हमारे पास सही region नहीं है तो यह theme issue है block issue नहीं है
themes को थोडा और समझते हैं
हम drupal org से free में कुछ अच्छे से themes we सकते हैं
drupal org/projects/themes पर जाएँ
कुछ themes पर नजर डालते हैं जो drupal के लिए उपलब्ध है
अपने modules वाले tutorial को याद करें drupal के जिस version को हम उपयोग कर रहे हैं core compatibility द्वारा filter है
यहाँ 2205 themes हैं जब हम drupal 8 पर click करते हैं तो इसमें कम संख्या आती है
इस tutorial को recorded करने के बाद नयें theme जोडे गए हैं अब आप उच्च संख्या देख सकते हैं
themes का पता करना और कैसे मूल्यांकन करना है के बारे में सीखते हैं
यह modules के समान ही है
हम यहाँ drupal org से शुरू करेंगे
अब जब हम core compatibility द्वारा filter करते हैं तो वे स्वत: ही most installed द्वारा सॉर्ट होते हैं
adaptive theme इस प्वाइंट पर number एक है
और bootstrap दूसरे number पर है
bootstrap पर click करें
module tutorial से dmv के उदाहरण को याद करें यहाँ भी वही बात है
आपको पहले documentation पढना चाहिए
फिर अपने maintainers को जाँचे
और versions और project informations को देखें
recording के समय यह विशेष theme drupal 8 x 30 alpha 1 version में है
और वहाँ development version भी है
बाद में इस theme का drupal 8 version बनता है यहाँ हरे रंग में
contributed theme के कई प्रकार हो सकते हैं यहाँ 3 भिन्न प्रकार के themes हैं
हमारे पास बहुत ही simple contributed theme हो सकते हैं जिसे आप किसी भी प्वाइंट के लिए कंफिगर कर सकते हैं
हमारे पास starter themes हो सकते हैं जैसे कि bootstrap या zen
अपने css को रखने के लिए यह आपको खाली screen या छोटा framework देगा
या हमारे पास base theme हो सकता है जो कि यहाँ ऊपर अन्य subthemes के लिए डिजाइन किया गया है जैसे कि adaptive theme
लेकिन यहां सभी नियम समान है
documentation पर देखें maintainers पर देखें और versions पर देखें
हम अब contributed theme install करेंगे
drupal org/projects/zircon पर जायें
नीचे scroll करें यह एक अच्छा theme है जो कि विशेष रूप से drupal 7 और 8 के लिए बनाया गया है
यह कई sites पर इस्तेमाल नहीं किया गया है
हम इस theme का उपयोग करेंगे क्योंकि यह अभी drupal 8 के लिए तैयार है
tar gz पर right click करें और उस link को copy करें यह modules को इंस्टॉल करने के समान ही है अपनी site पर वापस जाएँ
अभी appearance और install new theme पर click करें
फिर से again की प्रक्रिया modules के जैसे ही है
url को paste करें औऱ फिर install पर click करें
theme हमारे web server से downloaded हो गया है और अब हम इसे on करने में सक्षम हैं
install newly added themes पर click करें
नीचे scroll करें
और आप zircon देखेंगे a flexible recolorable theme with many regions and a responsive mobile first layout
install and set as default पर click करें
जैसे कि हमने परिचय video में सीखानंबर एक: नयें themes इंस्टॉल करना कंटेंट को नहीं बदलता है और नंबर दो: हमें अपने blocks के स्थान बदलने की जरूरत हो सकती है
अब थोडा settings के बारे में भी सीखते हैं
settings पर click करें
हमारे पास zircon में सामान्य toggle display है
और shortcut icon
फिर से यदि आप logo अपडेट करना चाहते हैं जो कि global settings में है
और logo image settings
save पर click करें
और फिर अपनी site पर जायें
यह zircon हैयह drupal के लिए पूर्ण नम्य सुदृढ़ और वैश्विक अनुकूल theme है
structure और blocks पर जायें
demonstrate block regions for zircon पर click करें
हम यहाँ बहुत सारे block regions देखेंगे
एक header region main menu को main menu block region में रखने की जरूरत है क्योंकि फिर यह उचित फॉर्मेट में हो जायेगा
यहाँ slideshow region है जब आप view slideshow उपयोग कर रहे हैं
एक featured block region
help sidebar first sidebar second content
panel first panel second 123 और 4 और फिर footer region
ध्यान दें कि हमारे default theme से कुछ regions अब उपलब्ध नहीं है
इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए
यहाँ header region में बहुत सारी चीजें है footer region जिसे हमने powered by drupal block असाइन किया था अब मौजूद नहीं है
हम उसे फिर से footer में रखेंगे
यह तुरंत ही header से गायब हो जाता है
header से status message let और इसे message में रखें
footer menu को फिर से नीचे footer में रखें
हम search site branding और user account menu को ऐसे ही रखेंगे जहाँ पर वे हैं
primary menu गलत जगह में है लेकिन चलो उस पर एक नजर डालते हैं
save blocks पर click करें
अपनी site पर वापस जायें
और हम देखेंगे कि main menu कहीं भी नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि primary menu इस theme में मौजूद नहीं है
अत: हम अपना main navigation change और उसे main menu से बदलेंगे
नीचे स्क्रोल करें उस पर एक नजर डालें
अपने content क्षेत्र में हमें help block मिलता है
उसे help में रखते हैं
page title primary admin actions और page tabs ठीक हैं
sidebar first welcome to drupalville book navigation recent events added और tools
tools menu let हैं औऱ उसे sidebar second में रखते हैं हमने इसे पहले नहीं किया है
यहाँ चार panel regions हैं जिनमें हम कुछ भी रख सकते हैं
अब save पर click करें
और देखते हैं कि हमने क्या किया
यह अब बहुत अच्छा है
हमारा menu अच्छी तरह से main menu block region में है कुछ shading और कुछ colouring के साथ inline menu को अच्छा बनाने के लिए css लिया गया है
book navigation recently added events बाईं ओर है
और tools दाईं ओर है फिर sidebar first और sidebar second
और सभी कंटेंट बीच में हैं
यहाँ कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं
हमने अपना themes बदला है हमारे कंटेंट को छोडकर सब कुछ बदल गया है
हमें नया fonts नया font styles नया h3 tags नया block regions layouts और नया footer area मिल गया है
लेकिन हमारे कंटेंट और हमारे कंटेंट के वास्तविक layout में क्या नहीं बदला है
उन्हें बदलने के लिए हमें panels या display fields उपयोग करने की जरूरत होगी वे addon modules हैं जिन्हें हम drupal org से प्राप्त कर सकते हैं
themes शानदार हैं अब यह वास्तव में साधारण theme है यह कुछ जटिल themes हैं जिन्हें हम drupal से प्राप्त कर सकते हैं
आप drupal org/projects/themes पर a सकते हैं कुछ drupal 8 themes पर नजर डालें जो उपलब्ध हैं
अपने पसंद के अनुसार कुछ themes का पता लगाएँ उन्हें install करें और उन पर काम करें
themes कैसे हमारी site को प्रभावित करती हैं यह सीखने के लिए यह बहुत ही शानदार तरीका है आपको अपने अनुसार डिजाइन भी मिल सकते हैं
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में पहुँच गए हैं
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा themes का परिचय themes को खोजना और बेसिक theme को इंस्टॉल करना
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद